यह एक छोटा सा स्कूल है जिसका नाम एवरग्रीन पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर प्ले से लेकर एर्थ कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं।

यह एक के. ऍफ़. सी. है जो की चिकन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर लोग नॉन वेज खाने ज्यादातर आतें हैं।

यहाँ पर छोटे छोटे घरों से बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं।